नई और सब लाल कलर की कुर्सी रखी हुई है इस कुर्सीया के लेफ्ट साइड पर --

ये एक बहुत ही बड़ा लग्जरी शोरूम है इसका --

काफी बढ़िया दुकान है ये।